गेट के ऊपर एक दीवाल बना हुआ है जिसमें लाल कलर से कुछ लिखा हुआ है अंदर मकान है सामने एक टैक्सी खड़ी हुई है जिसका छत दिख रहा है टैक्सी का।

एक मकान का गेट है जो की नीले कलर का है। उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ हैजो की गेट को बना रहा है और सामने बहुत सारी सीमेंट की बोरियां। जो की पीले कलर की और सफेद कलर की है।

गेट है गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा लोगों बना हुआ है जो की कॉलेज का लोगो है और नीचे गेट का लोहे का बना हुआ हैऔर चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं जो की हरे भरे--

मम्मी पार्क है। पार्क में चेहरे भरे घास लगी हुई है जो कि छोटे-छोटे है और बीच में गोली कलर का इंटरेस्ट बनाया गया चबूतरा बनाएं है इसके बीच में एक पेड़ लगा हुआ है जो की हरा भरा।